ये बाइक शोरूम है इसमें सभी प्रकार की बाईकें खड़ी है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइके हैं ये सेल की जाती है।

इसके अंदर हर प्रकार हर क्वालिटी के मॉडल भी खड़े रखे हैं इसमें कूलर ए_सी पंखा सब कुछ रखे हुए है और बहोत कुछ इसमें लगा --

यह एक तालाब है इस तालाब में पानी भर रखा है और इस तालाब के पास में एक झुला है पेड़ है पौधे हैं और यहां पर बहुत सारी हरी पत्तियां भी पड़ी हुई हैं।

खड़ी की जाती है और इसमें गाड़ियों का कलर लाल है गेट का कलर ब्लैक है और ये फर्श बिछा रखा है ये सीमेंट का है।

फ्लोर के अंदर फर्नीचर फिट किया गया है यहां पर कुर्सियां पड़ी है टेबले पड़ी है बहोत सारी मशीने पड़ी हैं जो उसका कलर है वो व्हाइट है।

यह एक पार्क है यहां पर सभी लोग घूमने आते हैं और इस पार्क के कलर का गेट का कलर ब्लैक है बाउंड्री का कलर रेड है।

पेड़ पौधे रखा है यहां फर्श है फर्श का कलर व्हाइट है पास में बाइक खड़ी है मुर्गों का ब्लैक एंड व्हाइट है उसकी चोंच का कलर रेड है।

यहां पर बहुत सारी फ्रीजें रखी हुई है और इसमें दीवारों का कलर है वो वाइट है एक एल_ई_डी है।

यहां पर इंसान है औरते है सीढ़िए भी पड़े हैं वो सभी प्रकार का बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं जैसे इसके पास एक--

और इस मस्जिद का कलर है वो व्हाइट है बाहर एक चद्दर बिछा रखी है वो ग्रीन कलर की है और इसमें दीवारें भी व्हाइट कलर की बनी --

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और नीचे ब्ल्यू कलर की जींस पहन रखी है और इसमें तीन पेडिया बनी हुई है।

मुझे सामने बहुत सारे वाइट कलर के और ब्लू कलर के गुब्बारे दिखाई दे रहे और सामने बिल्डिंग का कलर वाइट है।